देखो भाई यहां पर कटिंग चल रही है और एक बंदा एक बंदे की कटिंग कर रहा है थ्रेडिंग कटिंग कर रहा है बहुत बढ़िया धन्यवाद।

यह एक बैंक है और सब लोग खड़े हुए हैं भीड़ बहुत मची हुई है कुछ बाइकें बाहर भी खड़ी कुछ लोग अंदर हैं कुछ लोग उसके उपर भी हैं।

यह लोग बाइक में चल लये हैं और यहाँ पे बोहत ज्यादा बाहन भी दिखाई दे रहे हैं और जमना एक्स्प्रेस भी यहां पे है हरे-भरे पौधे भी हैं।